में कुछ लगता है मीटिंग विटिंग कर रहे है साथ में बैठकर और उधर एक सांप जैसा बैठा है। बैठा है साफ --

बल बुल बल लगा हुआ है दोनो साइड उसके बाद आपका आदमी बहुत सारे देख रहे हैं।

जैसे कि यह फूल वगैरा दिया गया हैं सजाए हैं बारात मे ऐसे सजाते हैं गाड़ी शादी मे जाता हैं सजाके --

खीजूर का पेड़ दिखाई दे रहा है अ उधर दरवाजा है पेड़ वागेरा है सफेद कलर का। क्या है काफी अच्छा बनाया गया है।

हरे पीला कलर का घर दरवाजा आगू है स्विच बोर्ड है।

ये दवाई का दुकान है और कुछ मे रखा गया है बोहोत सारे।

मुस्लिमों का जगह है शायद मीटिंग वीटीग करता होगा। ऊपर दिया है हरा रंग का जैसे मुस्लिम लोग देते हैं।